यहाँ बक्सा है बक्सा काठ का है। इसमें दो ताला लगा हुआ है। दोनों ताला बंद है।

राम मंदिर है पृथ्वी है प्रण किया हुआ है बगल में आदमी खड़ा है ।

यह गाड़ी खुला हुआ है। गाड़ी को --

टायर ठीक कर रहा है गाड़ी का चक्का इधर मुँह खुला खुल के खुलता हुआ है दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है मोटरसाइकिल भी रखा हुआ --

गेट है। चारो तरफ से लोहे का घेरा किया हुआ है। एक ओढ़ी है।

यह कॉन्फ्रेंस हॉल है दो आदमी खड़े हुए है।

और पाच आदमी हैं जो लगता है एक्सरसाइज कर रहा है भीम रखा हुआ है।

इसपे पोस्टर लगा हुआ है बंधन बैंक ए.टी.एम लिखा हुआ है। बगल मे बहुत सारा मोटर-साइकिल लगा हुआ है बनाया गया है अंदर मे कार लगा है। एक आदमी खड़ा है |